आप इस तस्वीर को देख पा रहे हो।

इस तस्वीर में लड़का बैठा हुआ है और गुब्बारे का डेकोरेशन किया है इस लडके का यहा पे जन्मदिवस ये इसलिए ऐसा --

दोस्तों यह तस्वीर आप देख पा रहे है यह ऍलेक्सएस हॉस्पिटल की तस्वीर है ऍलेक्सएस हॉस्पिटल में मानकापूर में स्तायित है यहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मानकापूर का।